देखिये आप लोग जो देख रहे हैं ये कुछ सिपाही लोग यहाँ से जा रहे हैं। सिपाही लोग यहाँ से जा रहें हैं और ये बिल्डिंग व्हाइट बिल्डिंग । यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते है ये अपना घर है ये खुद का अपना घर है यहाँ पर लोग रहते है यहाँ पे नहाते धोवाते हैं यहाँ पर अपना खुद का याश्री ए_सी वेसी यहां पे लगा हुआ है और यहाँ पर फौजी लोग जो धूप में जा रहे हैं।

मंदिर जो है जी हाँ मंदिर है ये मंदिर में देखिए कितने सारे यहाँ पे सीढ़ी लगे हुए हैं यहाँ पे पानी आता है पानी जब पानी का समय यहाँ पे पानी जमा हो जाता है और यहाँ पे आदमी नहा कर के भगवन के दर्शन करते हैं पानी जल चड़ाते हैं एवं पुष्पम चढ़ाते हैं।

और जो है मोटर के द्वारा यहाँ पानी फ्रीज किया गया है फिर यहाँ से पानी निकला जा रहा है और बच्चे यहाँ पे खूब मस्ती कर रहे हैं इसमें चढ़ रहे हैं मजा ले रहे --

और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सैलून देख रहें हैं और आगे जो है फूल पत्ती का दुकान है और आप जो हैं बहोत अच्छा डिजाइन बना सकते हैं मैया को चढ़ाने के लिए।